यहां पे पंखे और लाइट भी लगी हुई हैं। यहाँ पे कांच की बनी हुई अलमारी रखी हुई हैं।

यह एक बहुत बड़ी अच्छी बिल्डिंग है जो पीले और भूरे रंग की है इसके आगे उसके ऊपर एक राउंड से चट्टान बने हुए हैं।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

और उसके झरने के नीचे पानी भरा हुआ है जिसमें हरी घास की परछाइयाँ आ रही है। यहाँ पे कुछ सूखे पेड़ भी हैं।

घना जंगल है जिसमें बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं। इसके आगे एक बाउंड्री खींची हुई है जो सफ़ेद और नारंगी रंग की है।

फूल है जो सफ़ेद और लाल रंग का है| इसके नीचे का डंठल हरा है और इसकी पत्तियाँ डार्क हरी है।

एक बहुत अच्छा मैदान है और काफ़ी बड़ा भी है यहाँ पे छोटी-छोटी घास उगी हुई हैं यहाँ पे कुछ छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं जिनपे आदमी कुछ बैठे बैठ के बाते कर रहे हैं।

इसके आसपास बहुत सारी बिल्डिंग और घर बने हुए हैं। इसके बीचों बीच में एक खम्बा है जिसमें तार लगे हुए हैं जो काले रंग के हैं।